यह एक गार्डन है गार्डन के बीच में काफी सारे बच्चे खेल रहे हैंऔर वहाँ एक साइकिल खड़ी हुई है जो की लाल कलर की है।